एक हॉल सा दिख रहा है उस हॉल मे येयेये लंबेसे चोडेसे काँच लगे हुए है।

एक घर दिखाई दे रहा है घर का मेन गेट लोहे का काला कलर का गेट है।

ये तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में बहुत सा पानी भरा हुआ है।

उस डब्बे मे ताला लगा हुआ है और उस डब्बे के काँच के अंदर कुछ प्राचीन सफेद कलर के समान रखे हुए है।

और उस मैदान मे एक बड़ा सा लिम का पेड़ अ लगा हुआ है।

और बिल्डिंग में बहुत सारी काँच की खिड़कियाँ लगी हुई है बिल्डिंग के गेट के आगे एक दोरी पर कुछ कपड़े सूखे हुए है।

एक बड़ा सा गेट दिख रहा है गेट के ऊपर स्काइ ब्लू का पेंट किया हुआ है गेट के नीचे एक छोटा गेट --

और बहुत सारे छोटे बड़े हरे भरे ऐसे पौधे लगे हुए है।

ये एक अह बड़ा सा मैदान दिख रहा है वे मैदान हरा भरा है उस मैदान मे बहुत से लंबे लंबे--

उन तस्वीरों के नीचे कुछ फूल के गमले रखे हुए है।

और उस लेडिज ने पिंक कलर का मास्क और सफ़ेद चस्मा पेहना है।